यहाँ पर कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर ग्रीन और येलो दिखाई रहा है यहाँ पर कुछ दीवारें दिखाई दे रही है जिनका कलर --

--मान का कलर ब्लू और पर्पल दिखाई दे रहा है कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिनका कलर ऑरेंज येल्लो रेड दिखाए दे रहा है।

पर आसमान का कलर ऑरेंज ग्रीन ब्लू दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान का कलर ग्रे और ग्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है जिनका कलर ग्रीन --

पर आसमान का कलर ग्रीन ग्रे दिखाई दे रहा है और कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिनकी दीवारों का कलर वाइट ग्रीन --